अ पीछे बड़ा सा टीन शेड बना हुआ है उसके अंदर एगो मंदिर है लाइन से रखे हुए है जो की कत्थे कलर की लकड़ी से बने हुए है।

अंदर पेट्रोल बूथ पे ब्लू और गिरिन कलर का बैनर लगा हुआ है अंदर एक ऑटो खड़ा हुआ है। अ--

और ट्यूबलाइट्स लगी हुई है बड़े-बड़े फैन है अ सामने कुछ लोग अंदर आ रहे--

ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है बैठा हुआ है और उसके हाथ में वेट लिफ्ट है पीछे कुछ बना हुआ है।

दो लोग फोटो खिचवा रहे हैं | मियाँ बीवी जैसे लग रहे हैं | पीछे फूलो का डेकोरेशन है उसमें हरे पीले लाल फूल हैं ।

अ जो आदमी हॉल में बच्चे योगा कर रहे हैं बॉक्स भी उसमें दिखाई दे रहा है सभी औंधे लेटे हैं पैर ऊपर किए हुए हैं अपने हाथों को पैरों से पकड़े हुए हैं।

जिसके ऊपर पिली घास ऊग रही है रेत के ढेरे पढ़े हैं ईटो के ढेरे पढ़े है साइड से बिजली के प्लांट गए हुए है सामने एक बिल्डिंग दिख रही है और उसके नीचे एक पार्किंग में गाड़िया खड़ी हुई है।

नीचे एक छत्त का फोटो है जिसपे काम चल रहा है मजदूर काम कर रहे है कुछ लोग लोहा बांध रहे है लक--

बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ सामने एक अ-- मूर्ति रखी है एक बहुत बड़े गुंबद में मीनारे है साइड से पंडित जी बैठे हुए है कुछ लोग है जो अन्न--

कुछ लोग एक स्टेज का डेकोरेशन कर रहे है बहुत सारे आदमी स्टेज के ऊपर है आसपास परदे है डाल दिए है रंग-बिरंगे फूलों से नीचे सजाया जा रहा है एक नकली जीना बनाया हुआ है जिसके ऊपर पर कारपेट है।

लोग ये जो सेल्फी ले रहे हैं सामने वाला बंदा कुर्ता-दुपट्टा पहना है पीछे की दो लेडीज साड़ी पहनी है उसके पास एक आदमी है जोकि वाइट शर्ट पहना है|

है साइड में एक आदमी की गोद में एक बच्चा है नीचे फर्श है जो कि मार्बल बिछा हुआ है जो--

चर्च है आस-पास बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं कुछ लोग है जो आगे कुर्सी पर बैठे हुए हैं एक औरत साइड में खड़ी हुई है।